ये एक दुकान ओपनिंग दिखाई दे रहा है यहां पे मंदिर वगैरह मिलता है।

और अंदर की शीशे की तरफ बहुत सामानें दिखाई दे रही हैं।

शीशा के ऊपर बहोत सारे गेंदे के फूल रखे हुए हैं।

मैदान में बहुत ज्यादा गाड़ी रखे हुए हैं एक कार दिखाई दे रहा है बहुत लोगों की भीड़ दिखाई दे रही हैं।

यहां पे एक बहोत बड़ा जो हैं --

साइड में एक छोटा सा दुकान दिखाई दे रहा है जोकि ब्लैक पंडाल लगी हुई हैं।

छोटे छोटे अं तरह तरह के मंदिर दिखाई दे रहे हैं।

चर्च सिंबल्स दिखाई दे रहा है यहां पे एक औरत जो है।

दो आदमी जो है वो चेयर पे बैठा हुआ है।

यहां पे एक ऑफिस दिखाई दे रहा है।